पोस्टर से और सामने वाली खिड़की पे भी कुछ पेपर लगा हुआ है और ये--

ये एक रिक्शे वाला है और ये अपने रिक्शे को चला रहा है।